यहाँ पर पुराने जमाने के सिहासन दिखाए गए हैं।

और यहाँ के दुकानदार बहुत ही अच्छे हैं।

जहाँ आप देखिये पहाड़ से पानी निकल रहा है।

जिनमें कितनी सारी लाइटे लगाई गई है और पेट्रोल टंकी में हम वाहन में तेल भराते हैं।

पूजा हम अपने स्वास्त के लिए करते हैं और यहाँ पे प्रसादी भी रखा गया है।

जहाँ पे बहुत अच्छा-अच्छा कपड़ा दिया जाता है।

यहाँ पर एक डान्स क्लास है जहाँ पे चार लड़कियाँ डान्स सिख रही है।

नीचे मे एक कार खड़ा किया गया है जो धुलने के लिए जा रहा है।

यहाँ पे छोटे-छोटे यहाँ फेवरेट जेट सर्विस के लिए आये हैं।

और खुदरा सामान भी मिलता है और यह दुकान बहुत अच्छा है।

और यहाँ पे बड़ा सा केकड़ा भी रखा गया है।

यह दुकान बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हमे सस्ते में सभी सामग्री मिल जाते हैं।

और ये दोनों खच्चर बहुत ही अच्छे हैं। । खच्चर दो --

जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े घुमने का पार्क बना होता है वही पे।